और इस फोटू में तो एक पेड़ नजर आ रहा है रे बाबा।

सरस्वती माता की और इसपे गणेश जी तस्वीर नजर--

हमारे यहां पर सभी प्रकार के पौधे व गमले जैसे--

रे बाबा सा लिखा हुआ है इस पर।

चढ्ढे भी लगे हुए हैं और वॉशरूम भी बना हुआ है साइड में बढ़िया है।

और यहां पर और भी बहोत सारी गाड़ियां हैं।

दो लड़के हैं जिन्होंने कोट पैंट पहना--

तीन पंखे जो छत पे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं जी--

कुछ टांग रखे हैं कुछ तह करके लगा रखे हैं।

और एक अंकल और बैठा हुआ है उसके हाथ में एक थैली है।

और यहां पर काफी सारा समान है खाने पीने का भी और पहनने ओढ़ने का भी।

गुब्बारे नजर आ रहे हैं लाल और सफेद रंग के--

फरश पे जो है टायले लगी हुई हैं।

इस फोटो मे एक झुला नजर आ रहा है।

और यहां पर ये ज्वेलरी की दुकान नजर आ रही है एक काले रंग की सीट भी नजर आ रही है।

ऊपर कई सारी लाइटें जल रही हैं सामने एक चेयर दिख रही है सरस्वती माता की --

इस फोटो में लटकने वाला झूला नजर आ रहा है सामने बोर्ड पे लिखा है। --

और यहां पर ऊपर सारा काला काला हैं नीचे लाल रंग के सोफे --

इस फोटो में एक दुकान नजर आ रही है क्रैक्स मोटू पतलू के पैकेट नजर आ रहे हैं।

तो मे एक आदमी बैठा है पूरे एक फोटो बनी हुई है पेड़ पौधे न--

और सामने मतलब मिट्टी मिट्टी नजर आ रही है और कुछ बच्चे वहां खेलते हुए दिख रहे हैं।

पीछे लाइटें जलती हुई नजर आ रही हैं शटर नजर आ रहा है दिन का समय है ये सब लाल रंग से लिखा हुआ है।

ऊपर कैमरा लगा है साइड में लिखा हुआ है आधार पीछे एक गेट है एक कंप्यू लैपटॉप नजर आ रहा है कीबोर्ड भी दिख रहा है जी।

लिखा है आर्या आयुर्वेदिक धर्मार्थ औषधालय।

इसमें एक बड़ा सा फूल नजर आ रहा है लाल और सफेद रंग का आस पास जो है पत्ते और ये --

सुंदर सुंदर तोते नजर आ रहे हैं यहां पर दो सफेद हैं तीन भूरे है और साइड में बास्केट की पड़ी हुई है जी--

साइड में भी कुछ समान रखा हुआ है नीचे नहीं कुछ समान रखा हुआ है और पीछे सारा हरा-हरा बैकग्राउंड नजर आ रहा है जी --